यह यह स्कूल के बच्चे है और ये बच्चे को मैदान में खेलने के लिए लाया गया है जो की वहां पे काफी बच्चे खेल रहे है और कुछ बच्चे बैठ-बैठ के देख रहे है सब का खेल और इधर काफी मैदान तो काफी बढ़िया और काफी सुंदर जगह है खेलने के --

यह डैम है। डैम के आगे आगे आदमी खरा होकर फोटो खीचा रहा है और डैम काफी बढ़िया और काफी अच्छा दिख रहा है और डैम डैम डैम का लूकिंग बहुत खतरनाक बनाया गया है।

यह यह यह बायो बायोलॉसिटी पार्क है। जहां कि जो कि जो कि जंगल में और यह पार्क काफी बढ़िया है काफी अच्छा है और काफी सुंदर भी है और यह पयार्क पार्क बहुत चर्चे में है।

यह बस स्टेशन है और यह बस स्टेशन काफी बड़ा और काफी ज्यादा बस है। बस में कुछ यात्री गण रुके हुए उतरे हुए है और बस से पूछते है कि यह बस काफी बढ़िया और काफी डिजाईन दार है और बस बहुत बड़ा बहुत बढ़िया दिख रहा है।

मोर है। यह मोर को चिड़िया घर में बंद किया गया है और यह मोर काफी सुन्दर दिख रहा है और मोर मोर सब जब पानी पड़ता है तब मोर सब मोर सब डांस करते हैं जो जिसका नजारा देखने में काफी अच्छा और काफी बेहतर लुक आता है जो की बहुत बढ़िया होता है।